कोई एक पोखरा देखने को मिल रहा है जैसे लग रहा है एक बहुत बड़ा डैम है।

और आगे तरफ हरे-भरे पेड़-पोधे भी देखने को मिल रहे है। ।

और साइड से एक सड़क है और जो बहुत ही अच्छा नजारा देखनें को मिल रहा है सड़क के--